एक डस्ट्बिन का डब्बा रखा हुआ है एक साइकल खड़ी हुई है बहोत बहोत सारी बाइक खड़ी हुई दिख रही है एक बहोत बड़ा सा खंबा दिख रहा है और ऊपर कार्यालय के बहोत सारी लाइट लगी हुई है ।

यह एक छोटी सी दुकान है इस दुकान में सब कुछ सारा आइटम रखा हुआ है इसमें छोटे-छोटे क लकड़ी के शेल्फ बने हुए है।

यह बच्चों के सामान से लेकर के बड़े लोगों का सामान तक रखा हुआ है बुक्स भी रखी हुई है टेबल पे और एक ब एक अंकल बैठ करके बाहर न्यूज पेपर पढ़ रहे है बाहर गल्ला रखा हुआ है बर्तन साफ करने वाला रखा फैन लगा हुआ है।